एक गेट दिखाया गया है। इसका रंग ब्लू है और एक रोड भी दिखाया गया है और पीछे कुछ घास और कुछ पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं जो कि बोहोत सुंदर लग रहा है।

फूलो की माला दिखाई गयी है और बोहोत अच्छे से फूलो की माला सजाई गयी है और बैलून से भी सजाया गया है जिसका रंग है यल्लो और वाईट । बोहोत जगह अच्छे से फूलो को बैलून्स से सजावट की गयी है जो कि बोहोत सुन्दर लग रहा है।

इस तस्वीर में रोड का दृश कराया जा रहा है। उसके साइड में एक ग्रीन कलर की दीवार भी दिखाई दे रही है। उसके साइड में बहुत सारे कारें नजर आ रही हैं।

सामने कुछ बहोत सारे घर और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत सुंदर लग रहा है। पेड़ बहोत हरे भरे लग रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कंप्यूटर का दृशय करया जा रहा हैइसमें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और टेबल में कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और स्टेपलर पेज --

माउस दिखाई दे रहा है सामने कुछ लोग नजर आ रहे हैं भी नज़र आ रहा है इसमें येलो कलर का का दिखाई दे रहा हैअंदर वाइट कलर का भी है।

इस तस्वीर में मंदिर का दृश्य दिखाया जा रहा है जिस में--

और यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे एक बाइक जाती हुई नज़र आ रही है और बाइक के आदमी की शर्ट का रंग येलो हो रखा है | यहाँ बहोत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ साइकल्स भी पार्क की गई है।

यलो कलर का बिल्डिंग जैसा कुछ दिखाया जा रहा है यहा पे दिन का द्रश्य दिखाया जा रा है और यहा पे पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है।